आइए नर्सरी आइए और नारयल लीजिए बगीचा देखिए हर एक किस्म का सब पौधा सब लगा हुआ है ।

पंपचर बन रहा है और बना भी रहा है।

प्रसाद पंचर बांये है बनता है ऐसा बढ़िया पंचर दुकान है आइये।

रुकना नहीं चाहिए होना चाहिए बहुत बढ़िया होना चाहिए घर ऐसा सुंदर घर नही कोई देखा है ।

आइए बॉडी बनाइये बहुत अच्छा मशीन है आइए।

आदमी आता है और चाय पी रहा है देख रहा है अ चाय पी के जाता है।